पर एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने कई सारे ऑटो जाते हुए दिखाई दे रही ये ऑटो ब्लैक और येलो कलर के दिखाई दे रहे है इन ऑटो पर काफी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

किसी जगह पे बहुत सारे बच्चे इकठ्ठा हुए दिखाई दे रहे है ये बच्चे कुछ लड़के और कुछ लड़कियां है सारे अलग अलग उम्र के दिखाई लग दे रहे है इन बच्चो ने नीले रंग के कपड़े पहन रखे है लड़कियों ने नीले रंग की टोपी भी लगा रखी है।

यहाँ पर एक आदमी किसी कार के कोई हिस्से को ठीक करता हुआ नज़र आ रहा है यह आदमी एक टीन छत के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इस आदमी ने नीले रंग की टोपी लगा रखी और नील रंग की शर्ट पहन रखी हैं।

यहाँ पर किसी रेलवेस्टेशन के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा हे इस रेलवे स्टेशन की दीवारों का रंग गुलाबी है और एक गुम्बज भी दिखाई दे रही है रेलवे स्टेशन के सामने झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

बगल में नीली लाइट जल रही है और बहुत सारी खुशियां भी रखी हुई है और कई लोग बैठे दिख रहे हैं।

फैक्ट्री के अंदर कई सारे लोग काम कर रहे है। एक लड़का जिसने नीले रंग की टीशर्ट पहन रखी है। उसने नीले रंग की टोपी भी लगा रखी है। सारे लोग काम करते हुए नज़र आ रहे है। ऊपर काले रंग की छत दिखाई दे रही है।

यहाँ पर किसी जगह पर कपड़े बाटने का काम चल रहा है। यह कपड़े बाटने का काम किसी फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है।